यह बस बा कहि तीरथ जा त बहुत लोग बा नीला रंग का सीसा बा लाल पियर बा सफ़ेद बा सीसा लॉएट दु गो जरत ता आगे दिखाई दे ता मा --

पुराना मकान बा। उम्म बादल लउकता। कीचड़ कीचड़ा बहुत बा। जंगला बा। रेलिंग लउकता। तार बा।

बादल लउकता जंगला बा बहुत पुराना मकान बा कचड़ा बा।